यहाँ टेबल पे एक प्लेट में बहुत सारे चॉकलेट और बिस्कुट रखे हुए हैं यह टेबल पे बहुत सारे डेरी मिल्क किटकैट --

ये एक कोचिंग सेंटर हैं। यहाँ पे बहुत सारे लड़के कोचिंग के क्लास करने के लिए यहाँ पे आते हैं। काफी सारे लड़के यहाँ पे आए हुए हैं।

यह टोटो बैटरी से चलती है इस टोटो को बाजार में ज्यादा चलाया जाता है।

यहाँ पे सभी वो सब कोरोना के दोनों टीके अवश्य लगाए का पोस्टर लगाया गया है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे --